इस म्यूजियम दिखाई दे रहा है जहाँ पे--

और यहाँ पे कुछ ईट ढली हुई है और रेट गिट्टी ढली है।

ये एक सब्जी का ठेला दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहोत सारी सब्जियां रखी है बैगन--

ये एक पोंड दिखाई दे रहा है जोकि बहुत ही पुराना पोंड --

और धुप हो रही है थोड़ी-थोड़ी--

यहाँ पे और यहाँ पे कई सारी फोटोस ।